नमस्कार iit बॉम्बे के द्वारा शुरू low cost low cost fossee netbook को कैसे प्रयोग करते हैं के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
* fossee netbook का desktop
* कुछ programs जो इसके साथ आते हैं
* और नए प्रकाशनों के साथ इसके operating system को कैसे अपडेट करते हैं
हम इसे fossee netbook की तरह उल्लिखित करते हैं क्योंकि
fossee team इसके लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ आई
* operating system ठीक किया
* सॉफ्टवेयर के वितरण के साथ a
* और अपडेट और training प्रदान करते हैं
operating system ubuntu लिनक्स के नवीनतम प्रकाशन से बनाया गया है
* fossee netbook एक कमकीमत का laptop है जो iit बॉम्बे ने शुरू किया है
* basics comtech pvt ltd द्वारा इसकी विशेषताओं का निर्माण किया गया है
* education और research के लिए डिज़ाइन किया गया है
* और कीमत है लगभग 5000 रूपए plus customs टैक्सेज़ आदि
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
gnu/लिनक्स operating system का fossee वितरण और
kazam screen recorder version 145
अब fossee netbook पर एक नज़र डालते हैं
fossee netbook इस प्रकार दिखाई देता है
इसका वज़न लगभग 700 ग्राम है
इसमें एक 10 inch का display और touchpad है
इसमें आगे एक camera और दो builtइन speakers हैं
इसमें दो regular usb ports एक mini hdmi ports एक lan ports है
इसमें audio support के लिए अलगअलग headphone और mic jacks हैं
इसमें एक sd card slot है जो 32gb तक support कर सकता है
इसमें एक 5000 mah की battery है
program प्रयोग किये जाने के आधार पर यह 4 से 8 घंटों तक बैकअप देती है
इसमें 1gb ram और 8gb rom है
इसमें wifi और bluetooth support भी है
हार्डवेयर के स्पष्टीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए
fossee ऑपरेटिंग सिस्टम की recovery/अपडेट/पुनः संस्थापन के लिए आपको निम्न करना चाहिए
netbook fossee in/recovery में प्रदान किये गए निर्देशों के साथ sd कार्ड तैयार करें
fossee netbook का poweroff ऑफ करें
sd कार्ड को slot में डालें और थोड़ी देर तक power की को दबाएं
screen को एक text message entering recovery mode दिखाना चाहिए
अगले screen में दिखाए गए में से उचित विकल्प चुनें
आप यहाँ जो देखते हैं वो fossee os के साथ fossee netbook का desktop है
default रूप से आप desktop पर कुछ icons देखेंगे
किसी भी computer की तरह किसी भी icon पर doubleक्लिक करना सम्बंधित application खोलेगा
यहाँ दायीं तरफ नीचे network connection icon है
इस समय यह कहता है no network connection
अब सीखते हैं कि network से कैसे जुड़ते हैं
wifi connections के लिए केवल icon पर click करें
पहले से उपलब्ध connections की एक सूची प्रदर्शित होती है
आप इनमें से किसी से भी जुड़ सकते हैं आपको दिया गया wifi network password पता होना चाहिए
मैं अपनी machine पर उपलब्ध networks में से किसी एक को चुनूँगी
फिर password type करें और connec t button पर click करें
system tray में network icon को देखें
icon अब बदल गया है
यह वो network निर्दिष्ट करता है जिससे अभी मैं जुडी हूँ
अब हम desktop के नीचे बाएं कोने पर ध्यान देते हैं
यहाँ main start menu प्राप्त होता है जो main menu है
start menu सारे उपलब्ध सॉफ्टवेयर और applications को वर्गीकृत तरीके से सूचीबद्ध करता है
कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सूचीबद्ध है यह जानने के लिए प्रत्येक category पर click करें
अब इनमें से कुछ को देखते हैं
education category में ये सारी applications सूचीबद्ध हैं
यहाँ हमारे पास geogebra है
यह algebra और geometry के सिद्धान्तों को सीखने के लिए एक उत्कृष्ट free सॉफ्टवेयर है
यह विशेष रूप से 6th grade के ऊपर के छात्रों के लिए उपयोगी है
spoken tutorial project ने geogebra को सीखने के लिए बहुत अच्छे tutorials बनाये हैं
ये
आप देख सकते हैं कि browser window में यह link किस प्रकार दिखता है
और आप इन tutorials को अनेक भारतीय भाषाओं में भी देख सकते हैं
इस पेज पर spoken tutorials के साथ netbook पर कुछ अधिक free सॉफ्टवेयर हैं
मैं इन्हें जल्द ही दिखाऊंगी
अब start menu पर वापस आते हैं
अब एक अन्य सॉफ्टवेयरjmol देखते हैं
यह 3d में chemical structures जैसे अणुओं बन्धों आदि को देखने के लिए उपयोगी है
spoken tutorial website पर अनेक भाषाओँ में jmol के tutorials हैं
start menu में अब एक अन्य categorygraphics देखते हैं
यहाँ आप gimp inkscape और xfig देख सकते हैं
spoken tutorial website पर gimp inkscape और xfig के अनेक spoken tutorials हैं
आप इन tutorials का उपयोग कर सकते हैं यह सीखने के लिए कि इन graphic सॉफ्टवेयर्स को कैसे उपयोग करते हैं
अब internet category को देखते हैं और यहाँ ये विकल्प उपलब्ध हैं
यहाँ हमारे पास firefox web browser है
और यहाँ spoken tutorials हैं यह सीखने के लिए कि firefox को कैसे प्रयोग करते हैं
एक बार फिर ये अनेक भारतीय भाषाओँ में उपलब्ध हैं
office category में हमारे पास सम्पूर्ण libreoffice suite हैं
spoken tutorial website पर हमारे पास सम्पूर्ण libreoffice suite को सीखने के लिए tutorials हैं
अब programming category पर जाते हैं
यहाँ हम ipython देख सकते हैं
spoken tutorial website पर यह python series है
यहाँ हमारे पास scilab है
एक बार फिर spoken tutorial website पर scilab सीखने के लिए हमारे पास tutorials हैं
हमारे पास कुछ ides भी हैं जैसे code blocks और geany
इन पर अभी तक spoken tutorials उपलब्ध नहीं हैं
लेकिन अगर आप internet search करते हैं तो आपको सीखने के लिए इन पर उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होगी
अब sound & video में उपलब्ध applications को देखते हैं
अतः हमारे पास audacity है जो audio tracks को record करने में उपयोग होता है
और यहाँ audacity का प्रयोग सीखने के लिए tutorials हैं
preferences desktop keyboard monitor network आदि को customize करने के लिए विकल्प रखता है
अब customise look and feel विकल्प पर click करें
default रूप से हम widget टैब में हैं
यहाँ प्रदर्शित windows की default theme को कोई भी बदल सकता है
दी गयी सूची में से अपनी वरियता की theme चुनें
आगे के tutorials में हम सारी अन्य tabs और उनके विकल्पों के बारे में विस्तार से सीखेंगे
लॉगआउट वो विकल्प है जो या तो shutdown या screen को lock करने या logout करने में उपयोग होता है
अब मैं cancel button पर click करती हूँ
start menu के बाद वाला icon desktop का shortcut icon है
अब इस पर click करते हैं
यह आइकन के साथ सारी खुली हुई windows दिखाता है और केवल desktop प्रदर्शित करता है
अब desktop पर कुछ icons देखते हैं
यहाँ हमारे पास terminal है
यह command line interface है
terminal को कैसे प्रयोग करते हैं यह सीखने के लिए कृपया boss linux की spoken tutorial series पर जाएँ
windows ऑपरेटिंग सिस्टम में file manager my computer विकल्प की तरह कार्य करता है
आप इस window से किसी भी file या folder पर जा सकते हैं
सॉफ्टवेयर center हमारे द्वारा इच्छित सभी सॉफ्टवेयर्स को संस्थापित करने में मदद करता है
language support fosseeऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित सभी भाषाओँ की सूची दर्शाता है
desktop पर readme named pdf पर ध्यान दें
कृपया इस pdf को खोलें और पढ़ें
यह हमें netbook के बारे में जानकारी देता है
इसके साथ हम fossee netbook को कैसे प्रयोग करते हैं के इस tutorial के अंत में आ गए हैं
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project teamकार्यशालाएं चलाती है online tests पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict के द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है